दुकान के अंदर एक घड़ी का दृश्य दिख रहा है।

यहां पे एक मंडप का दृश्य दिख रहा है।

यहां पे एक सब्जी मार्केट का दृश्य दिख रहा है।

यहां पे एक तौलने का मशीन दिख रहा है जिसके ऊपर पचास के_जी लिखा हुआ है।

यहां पे कुछ पेन रखे हुए है उसके बगल में कुछ पेंसिल का डब्बा रखा हुआ दिख रहा है।

यहां एक लड़का दिख रहा है बगल में कुर्सी दिख रहा है।

यहाँ पे एक फ्लॉवर का पॉट दिख रहा है जिसके ऊपर फ्लॉवर लगे हुए हैं।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

बैंक के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है।

घर के अंदर एक कुर्सी दिख रहा है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है।

उपर मैं छपरा दिख रहे हैं कुछ डंडे दिख रहे हैं।

यहां पे एक पेट्रोल टंकी का दृश्य दिख रहा है।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

यहां एक बाल्टी रखा हुआ है ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

रैक के ऊपर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं।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

यहां पर दो तीन चार टेबल रखे हुए हैं।

यहां कुछ पेड़ दिख रहे हैं ऊपर में आसमान दिख रहा है।

यहां पे कुछ पर्दे लगे हुए दिख रहे हैं एक माइक दिख रहा है।

यहां बगल में एक साइकिल दिख रहा है जिसके ऊपर एक झोला लगा हुआ है।

यहां पे एक घर का दृश्य दिख रहा है।

नीचे में बहोत सारे मिट्टियां दिख रही है।

यहां पे एक ए_सी दिख रहा है उसके नीचे चटाई बिछाया हुआ है।

यहां पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर कुत्ता का चित्र बना हुआ है।